यह एक किसी मंदिर की फोटो है जो पुराना सा मंदिर है।

इसमें शीशे से अलमारियां बनाई गई हैं कुछ अलमारी में थोड़ा थोड़ा कट दिया गया है।

काफी लोग हैं जो अलग खड़े हुए हैं काफ़ी लोग एक साथ में खड़े हुए हैं।

यहां प्लेटफॉर्म दिन का फोटो हैं नीले कलर का गेट लगा--

जानवर पले हुए हैं बहुत सारे तीन चार लोग हैं जो उनका सर्वे कर रहे हैं।

काले कलर की पत्थर से दीवाल बनाई गई है स्विमिंग पूल के बीच में--

नमकीन मसाले सारे मसाले मिलते हैं।

घास लगी है बहोत सारी बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं यहां।

एक आदमी खड़ा हुआ है दो नाव हैं जिनमें पानी भर गया है वो ख़राब हैं।

यह एक किसी नदी के किनारे की फोटो है जिसमें झरना ऊपर से थोड़ी नीचे गिर रहा है।

ये कोई स्कूल क्लास की फोटो है जिसमें यूनिफॉर्म जिसकी नीली टी शर्ट और काले कलर का पैंट है।

जीने बिक्री के सजावट के रूप में रखा हुआ गया है।

इसकी वजह से हम मैच की फिक्सिंग फिनिशिंग करते हैं।

और ग्राउंड में घास हरी हरी है तीन स्टंप लगी हुई हैं।

और इसमें दिन का फोटो है लाइट जल रही है पंख लगा हुआ है रूम में।

हरे कलर के और खजूर के दो पेड़ लगे हुए पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए--